मुझे इस तस्वीर में बहुत सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहा है।

सामने में एक बड़ा सा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।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

कोने में एक पेन भी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक टी_वी और एक पंखा भी लगा हुआ हैं।

सामने में एक काला रंग का बास्केट भी दिखाई दे रहा है।

सामने में बहुत सारे कप नूडल्स और हॉर्लिक्स के डब्बे भी दिखाई दे रहा हैं।

सामने वाले आदमी के हाथ पर एक फोन भी पकड़ा हुआ है।

सामने में बहुत सारा बड़े बड़े कार्टून भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के आस पास कई सारे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक टेबल और कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक बड़ा सा सड़क भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक सफेद रंग की गाड़ी दिखाई दे रहा है।

बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

आसपास कई सारे पेड़ पौधे भी दिखाई डे रहा है।

बिल्डिंग के अंदर पंखा भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के शीशे भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में एक सी_सी_टी_वी भी लगाया हुआ है।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

जिम के अंदर बहोत सारे शीशे भी लगा हुआ है।

सामने में तोख़ता से बनाया हुआ बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट के बाहर एक कारपेट और एक बाकेट भी दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट की रंग बिरंगे पर्दे भी दिखाई दे रहा है।

सामने में अलग अलग तरह के जूस और टूथपेस्ट और कई सारे हार्पिक के डब्बे भी दिखाई दे रहा है।

एक लड़की के हाथ पर घड़ी भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक स्विच बॉक्स दिखाई दे रहा है।

दीवार पर कई सारे स्पीकर भी लगा हुआ है।

और उसके खिड़कियां और दरवाजे भी दिखाई दे रहा है।

आसपास कई सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में नदी दिखाई दे रहा है।